इस--

कर रहे हैं एक लड़का खड़ा हुआ उन्हे देख रहा--

तीन बस रुकी हुई।

वेट हैं और कुछ लड़के एक्सरसाइज कर रहे हैं।

यह कोई कपड़ों की दुकान दिखाई दे रही हैं।

रंग की बहोत सारी सकूटी --